इस तस्वीर में मुझे कुछ रैक दिखाई दे रहे हैं।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

इस तस्वीर में मुझे कटनी जंक्शन दिखाई दे रहा है।

यहां मुझे एक दरवाजा दिखाई दे--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

यहां मुझे मोबाइल गैलरी दिखाई दे रही है।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

इस तस्वीर में मुझे एक खिड़की दिखाई दे रही है।

इस तसवीर में मुझे एक कमरा दिखाई दे रहा है।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

यहां मुझे एक पुरुष दिखाई दे रहा--

इस तस्वीर मे मुझे रेलवे ट्रैक दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में मुझे एक पंखा दिखाई दे रहा है।